और बगल में आदमी कुछ कर कर रहे हैं।

एक का वाइट एक आदमी वाइट कलर का शर्ट पहिने जिसके हाथ में झोले हैं।

इस पिक्चर में एक दुकान है जिसमें बहुत सारी बाल्टियाँ रखा हुआ है रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का फ़र्श है।